ओर पोर यफूण कुछ ईंटे दिखेण लगीं बिचा कुछ रेतु दिखेण लग्युं जों का एंच कुछ सफ़ेद चुना बिटि का कुछ बणायु च पार फुणा हम त कुछ कूड़ा मैदान करन दिखेण लग्यां।

पैथर हम तें भोत सारा फूल छन दिखेण लग्यां गणेश जी की मूर्ति छ दिखेण लगीं दिखेण से लगदु यख कै कु ब्यो छ होणु।

जेन सफेद कपड़ान पैरयां पैथर हम तें एक बड़ी ईमारत दिखेण लगीं जे का एंच बड़ु बोर्ड लग्युं जे पर सैनिक साइकल मार्च लिख्युं दिखेण सी यु गाड़ी वाला की दुकान छ लगण लगीं।